बाहर पूरा कचरा है ग्रीन कलर की घास लग रही है वहाँ जे.सी.बी. की मशीन भी खड़ी हुई है और बहोत सारी विंडोज़ बनी हुई दिख रही है।

एक पत्थर का यहां पे एक एक हवेली टाइप बनी हुई है टूटा-फूटा मकान बना हुआ है पुराने जमाने का एण्ड इसमें बहुत सारी विन्डो वगैरा बनी हुई है पत्थर का ये पूरा टूटा हुआ है बाहर भी इसमें बहुत सारे पत्थर रखे हुए हैं।

दूर-दूर में यहाँ पे पहाड़ दिख रहा है एक साइड में इसके लेफ्ट साइड से एंड यहाँ पे आसमान में बादल भी नहीं है ये पूरा आसमान नीला पड़ा हुआ है।

सुखदियो पैलेस के नाम से एक गार्डन बना हुआ है बहुत बड़ा उसके ऊपर सुखदियो पैलेस लिखा हुआ है पिंक कलर का बड़ा-सा गेट बना हुआ है पिंक कलर का आस-पास में पेड़-पौधे बने हुए हैं अंदर भी ग्राउंड में पेड़-पौधे लगे हुए हैं।